दे रही है यहां पर बहोत सारी टेबले भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

सब्जियों की करेट भी लगी हुई दिखाई दे रही है।